इस चित्र मे हमें एक पेट्रोल टैंक दिख रहा है।

और तीन-चार अंकल इधर भी बैठे हुए हैं।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

इस चित्र में हमें गार्डन दिखाई दे रहा है जिसके साइड में रोड बना हुआ है और एक कार खड़ी हुई है।

पूरा पेट्रोल डेम बलून से सजा हुआ है और बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं।

इस चित्र में हमें झूला दिखाई दे रहा है।

और उसके साइड में एक और स्विमिंग पूल बना हुआ है।

और आसपास में बहुत सारे घर बने हुए हैं पीछे बड़े-बड़े पहाड़ बने हुए हैं।

और यहां पर सेवो क्लास दिख रहा है।

और एक आंटी खड़ी हुई है जो रेड कलर के कपड़े पहनी है।

और इधर की जमीन वाइट और रेड कलर की पुती हुई है।